यह गार्डन का फोटो --

इसमें बहुत सारे पिड्डे खड़े हुए हैं पीले से हड़का सा--

बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं बड़े बड़े --

यह मुझे एक अस्पताल की फोटो लग रही --

साइड में पड़ा है पीले कलर कपड़े --

और कुछ की कमर पे पीले कलर की पट्टी बंधी हुई है। कुछ अ कुछ कमर पे ब्लैक कलर की और कुछ एक की कमर पे लीले कलर की पट्टी बंधी है।

और एक बोतल रखी है व्हाइट कलर की।

लड़की खड़ी है ब्लैक कलर की कपड़े पेहनी।

यह किसी हॉस्पिटल की फोटो है अ--

बेड पड़ा है और इधर मशीन लगी है किसी प्रकार की।

जिसमें दो तीन लड़के दिख रहे मुझे।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

इस फोटो में मुझे लग रहा है गेहूं काटने की मशीन खड़ी है लाल कलर --

में तीन चार आदमी लग रहे जो मशीन खराब लग रही--

बहुत सारे पेटे खड़े रहियो कहीं का सा लग रहा है सामान।

डॉक्टर है और एक है सिंपल ।

एक लेडीज ने टोपा ओढ रखा हरे रंग का।

जिसमें ये ब्लैक कलर की कुर्सी रखी है घूमने वा--

यह पीले मकान पीले कलर का स्कूल है।

यह एक ऑपरेशन थिएटर है।

इसमें कुत्ते का और ऑपरेशन हो रहा है।

जो ग्लब्स पहने हैं व्हाइट कलर की इन्हें हा इनके हाथ में कुछ है।

यह किसी कमरे की फोटो --

झुड़ा है और उसकी साइड में एक आम केले का पेड्डा है।

रेडियो लगी हुई है और दो घोड़े चमक रहे है और--

यह किसी कमरे की फोटो --

पांच कुर्सी लगी हुई है और एक साइड में जीना--

और एक शीशा लगा हुआ है शीशे पे वन लिखा हुआ --

और एक अह स्कूल है यहां पे।

एक छोटा और यहां पे पास में एक साइकिल खड़ी हुई है।

टेबल हरे रंग नीले कलर की है।

वेगनार गाड़ी है लाल कलर की।

प्रकार के ढकने के कुछ कुंबे से बने हुए।

इस फोटो में बहुत सारे आदमी घूम रहे हैं।

यहां बहुत सारी मशीने लगी हुई है और पर्दे टंगे हुए हैं।

यह किसी चीज का सैलून है यहां--

पीले कलर की सीट धरी हुई है और एक बोर्ड है और--

यह किसी चीज का पिच है जिसमें बहोत से बच्चे खेल रहे हैं।

दो बच्चे आपस में खेले रहे ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने जो--

यह इस स्टेज पे पीले कलर के कपड़े लगा हुआ है पैडी भी लगी हुई है इसकी।

साइकिल है दो आधा दिख रहा है एक पहिया उसके एक बाज्जू --

इस फोटो में पानी चल रहा है बहुत सारा।

काउंटर हैं काउंटर पे शीशा लगा हुआ हैं।

ये इधर एक औरत एक जेंट्स बैठा हुआ है और--

साइड दो साइड में छोटे छोटे सोफे हैं।

लकड़ी का और लोहे का लग रहा है।

अलग अलग कलर के कपड़े पहने हैं लड़के।

यह कोई प्रोग्राम की फोटो है।